रेलिंग बनी है जो की स्टील की पाइप की दिखाई दे रही है।

है एक ग्राउंड है जिसमे बहुत सारे व्यक्ति है क्रिकेट की पिच बनी हुई है और वहा पर सभी ने व्हाइट कलर की ड्रेस कोड पेहना हुआ है।

यह एक किला दिख रहा है जो की बहुत पुराना किला है| इसमें बहुत सारे विंडो है और पेड़ लगे हुए हैं| पेड़ो का कलर --